यहाँ पे काफी अच्छा म्यूज़िक सिस्टम्स रखे हैं। ये लोग सीखने के लिए आते हैं। कुछ लोग देखने के लिए आते हैं। यहां पे तबला रखा है और पियानो यहां पे देखिए कितने सारे लोग हैं। बच्चे तक सीखने के लिए आते हैं यहां पे।

एक हाउस टाइप बना हुआ है जहाँ पे पुलिस वगैरा का होता होगा शायद इससे कुछ एक यहाँ पे बाइक खड़ी है

घर के साइड में ही एक रोड निकल रही है | सामने एक घर दिख रहा है आपको बोहोत लोग आते हैं यहाँ पे कुछ लोग रहते हैं और ईधर तीन चार बाईके वो कार्स वागेरा भी खड़ी हैं | रोड है काफी अच्छी--

चॉकलेट्स वगैरह का और शैंपू साबून बहोत सारी चीजें रखी हैं। बाल्टी रखी है। कैलेंडर रखा है।